दुकान के बाहर बहोत सारे कपड़े टंगे हुए भी है और दुकान के अंदर गद्दी भी बिछी हुई है।

कुछ माला भी नजर आ रही है और जो बहोत सारी सुंदर सुंदर लाइट लगी हुई है अंदर तरफ कुछ बैठने के स्थान नजर आ रहे है जहाँ पर भी लाइट लगी है।

ये तस्वीर एक जिम के अंदर की है जिम नीचे मैट लगा हुआ है जिम में बहोत सारी अलग अलग तरीके की मशीन है।

होटल गेटवे ऑफ कर्नाटका के बाहर से ली गई है जो कि शायद से कर्नाटका मे होगा।

सेल्फ के ऊपर कुछ सुंदर सुंदर आर्टीफैक्ट्स रखे गए हैं और एक घड़ी भी लगाई गई है।